यह एक योगा सेंटर है यहाँ योगा आसन चल रहा है यहाँ ज्यादा लोग नीचे कारपेट डालकर के बैठा हुआ है।

दूर से पेड़ भी दिखा रही है ग्रीन कलर का पत्ता दिखा रही है उसका यहां तो चार आदमी हैं एक आदमी ब्ल्यू कलर शर्ट और ब्लैक कलर पैंट पहना हुआ है।

और ओ पीछे लाईट्स ज्यादा लाईट्स भी दिखा रही है और ओ और वह कुछ लोग है खड़ा--

यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ छोटा सा दुकान भी दिखा रही है यहाँ।

इधर एक छोटा सा हम्म गार्डन जैसा है यहाँ एक आदमी हाथ पे कुछ अ फूल पकड़ के है और--

ये तो एक रेलवे स्टेशन है यहाँ तो कुछ रेल नहीं है और ओ--

ये तो एक बोर्ड है यहाँ का यहाँ टुटोरिअल और हॉस्टल जैसे नाम है और लाल कलर का एक बोर्ड भी है।

पीछे दीवार है ईंट से बना हुआ है अभी वर्क च चालू हो रही है।

एक स्कूल का बिल्डिंग है यहां तो स्कूल की स्कूल की अंदर कुछ लोग जा रही है बाहर --

बाहर गाड़ियां हैं यहां एक आदमी गाड़ी पे बैठा हुआ हैं और यहां शेर का स्टैटूस भी हैं।

लोग हैं पीछे दीवार पे कुछ अ कलरफुल डिजाइन जैसी है डेकोरेशन कर के लाईट भी दिखाई दे रही है।

ये तो छोटासा एक अं ऑफिस जैसा हैं यहां चार कुर्सियां भी हैं और एक आदमी खड़ा हुआ हैं।

ये तो एक गोशाला जैसी है यहाँ अ गौ माता है छोटा बढ़िया गो गौ माता है और यहाँ तो एक शेड है रेत का--

और एक पेड़ भी है हम्म और पीछे कुछ दीवार का कलर ग्रीन और लाल रंग का दिखा--

किन्तु ये स्टेशन जैसे है यहां तो बोर्ड लिखा हुआ है वेलकम टू भुवनेश्रर नाम के--

यह तो कुछ अ फंक्शन हॉल जैसी है यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ दिखा रही है लाल रंग का--

पीछे से दी दीवार है वो भी कुछ ऑरेंज कलर का है कर्टेंस है न व्हाईट और पिंक कलर का हैं पीछे लाईट्स भी दिखा रही--

ये तो एक पार्क जैसी है यहाँ एक अ बच्चे देखने के लिए ट्रायिंग ट्रायिंग है।

पेड़ भी है पेड़ का पत्ता ग्रीन कलर का है और पौधा भी है छोटा--

दो बोर्ड्स है और नीचे ग्रीन कलर का एक बॉक्स भी दिख रही है और यहां कुछ पुरानी जैसी बिल्डिंग है।

एक आदमी पिंक कलर शर्ट और ब्लैक कलर पेंट पहना हुआ है। एक आदमी व्हाइट कलर शर्ट और ब्लू कलर जीन पहना हुआ--

एक वॉटर फाल्स जैसी है यहाँ पानी चल रही है पानी का प्यूर है पानी ज्यादा पेड़ है पेड का पत्ता दिखा रही है और ओ--

ये तो एक दुकान जैसी है ये दुकान का तो ग्लास का डोर दिखा रही है यहाँ दो आदमी खड़ा हुआ हैं।

एक आदमी व्हाईट कलर शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी लाइट ग्रे कलर का शर्ट पैंट भी पहना हुआ है और ग्लास के पीछे एक फोटो भी--

ये तो मंदिर जैसी है अ मं ज्यादा मंदिर है तीन पांच मंदिर दिखा रही है पीछे बड़ा मंदिर भी एक है।

एक मंदिर है ये यहां तो हाथी का स्टेचू भी है मंदिर चार मंदिर दिखा रही हैं पीछे से--

और पीछे न कर्टेन का कलर और फूलों का कलर भी पिंक कलर है आ सिम्बल का लाव सिम्बल भी ए है डिजाइन इसका और लाइट भी है।

यह तो एक पार्क जैसी है यहाँ पेड्स दिखा रही है दूर से पेड़ का पत्ता ग्रीन कलर का है एक--

दीवार पे एक स्टीकर भी लगा हुआ है यहाँ ब्लू कलर का बोर्ड भी दिखा रही है अ कुछ लोग रोड की अ रोड के पास कुछ लोग दिखाई--

ये यहाँ एक शॉपिंग ओपनिंग जैसी है यहाँ तो अ गुडेल का फूल ज्यादा है और यहाँ भी--

यहां तो कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रहा हैं यहां ज्यादा लोग अं कुछ कल्चरल एक्टिविटी कर रही है।

फैनस है पकड़ने के लिए और कुछ ओ पिंक कलर का कुछ दिखा रही है और ऊपर से ग्रे ब्लू कलर का शेड भी दिखा --

ये एक मंदिर है अंदर भगवान दिखा रही है यहाँ तो लोग एक --

खड़ा हो गई है खड़ा हो गई है और पीछे दी दीवार पे ना पिंक कलर का कर्टेन दिखा रही है लाल रंग का भी डिज़ाइन --

ऊपर से ना कलर कलर लाइट्स भी दिखा रही है अ और अ कुछ लगा हुआ--

यह तो एक फ्रूट्स फ्रूट्स का गाड़ी जैसी है इसमें ना एपल्स और ऑरेंज दिखा रही हैं।

यह तो एक वॉटर फॉल्स जैसी है ऊपर से वाटर गिर रहा है और --

ओ वहां तो तीन पत्थर भी दिखा रही है पत्थर से पानी निचे आ रही है और ओ पीछे पेड़ भी दिखा रहा--

लाल लाल रंग का स्टूल भी है बैठने के लिए अंदर एक आदमी है यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक का फ्रीज भी है।

वायर सीलिंग लाइट्स भी है और खिड़ खिड़की दिखा रही है अ कर्टन भी दिखा रही है सफ़ेद कलर का है कर्टन यहाँ एक अ अलमारी जैसी है।

ये तो एक रेस्टोरेंट जैसी हैं यहां पे एंबिएंस अच्छा है देखने के लिए तरह तरह की लाइट्स भी दिख रही है दीवार पे ना--

तरह की फोटोस भी है यहाँ कुछ लोग बैठ के खाना खा रही है यहाँ टेबल और खुर्ची भी है।

दूर से पेड़ दिखा रही है इसमें न नारियल के पेड़ भी हैं और करंट पोल भी है।

यह तो एक दुकान जैसी है इसका नाम तो फर्स्ट क्राई नाम नाम है यहाँ यहाँ तो अ--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

पैंट पहना हुआ है ये सब लोग मैट पे बैठा हुआ हैं कुछ लोग आसन कर रही है योग का।

ये तो एक जिम जैसी है यहाँ तो जिम जिम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट --

और दूर से एक अ येल्लो कलर का बोर्ड भी दिखा रही है वहां ज्यादा लोग खड़ा --

यहां तो कुछ जीसस का प्रेयर कर रहा है लोग सब लोग व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है ये एक ये पीछे एक--

जीजस का स्टेचु भी दिखा रही है ऊपर डेकोरेशन खरा क क करा हुआ है और पंखा भी दिखा रही --

पिंक शर्ट पहन के दो लोग खड़ा हुआ है और पिंक कलर का शर्ट भी है ब्लू कलर का शर्ट भी है।